दुकान के बाहर रेता और क्रैशर पड़ा हुआ नजर आ रहा है।

पेड़ लगे हुए नजर आ रहें हैं।

स्टेज पर फंक्शन चलता हुआ दिखाई दे रहा है।

आसपास बहोत सारे पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं।

यह दृश्य हमें किसी स्पोर्ट्स की दुकान का नजर आ रहा है।

यह दृश्य हमें किसी ज्वैलर की दुकान का नजर आ रहा है।

येह दृश्य हमें किसी गांव का नजर आ रहा है।

पास में एक आदमी खड़ा है।

इस दृश्य में हमें बहुत सारी एक्सरसाइ मशीनस पड़ी हुई दिखाई दे रहीं हैं।

ये एक छोटा सा पुन बना हुआ दिखाई दे रहा--

इस दृश्य मे हमें बहोत सारे खेतों में फसले लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

टेबल के ऊपर दो लैपटॉप और एक--

तल पड़ी हुई दिखाई दे रही है।

इस दृश्य में हमें बाहर बहोत सारे व्हीकल --

इस दृश्य में हमें मैच चलता हुआ दिखाइ दे रहा है।

पर बहोत सारे डब्बे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

दुकान का नजर आ रहा है।

सड़क पर कुछ व्हीकल्स चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

सड़क की एक तरफ पुल बना हुआ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक लड़का ॲक्ससाइज करता हुवा नजर आ रहा हैं।

यह दृश्य हमें किसी लाइब्रेरी का नजर आ रहा है।